लोहै के पाइप दिख रहें हैं उसमे कुछ लोहै की जाली भी लगी हुई है बहोत सारे जानवर भी दिखाई दे रहें हैं हरी-हरी धुवाए भी दिख रहीं हैं घना जंगल दिखाई दे रहा है उप्पर बदल भी दिखरा --

खाई दे रहे है बहुत सारे चेयर भी दिख रही है गोल्डन कलर की चेयर रखी हुई है और धुआँ भी ग्राउंड में दिख रही है लाइट वाले खम्भे भी दिख रहे है ऊपर बादल दिखाई दे रहा है।

एम-म पेंट हुआ है हरा -हरा सा भी दिख रहा है व्हाइट -व्हाइट सा दिखाई दे रहा है तीन कुछ जानवर भी दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है घना जंगल --

उधर ब्लैक कलर का भी दिखाई दे रहा है घना जंगल भी दिख रहा है कुछ भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर बादल भी दिख रहा है।